सामने में बहुत बड़ी रैक देखने को मिल रही है और वो बहुत बड़ा गोदाम में रखी हुई है और नीचे काली कलर की फर्श भी देखने को मिल रही है और ऊपर में --

सामने में बहुत बड़ी मैदान देखने को मिल रही है और उसके पीछे एक बहुत पुराना हवेली देखने को मिल रही है और आगे में चारों तरफ से घे रही है और वहां पे बहुत सारे लंबी एक गेट देखने को मिल रही है ओकिलोआ की लाल कलर की ----

और वहां पे एक पंडित पूजा करते हुए नजर आ रहे उसने उजले कलर की कुर्ता पहनी हुई है और वहां पे एक मेन गेट लगी हुई है उसमें सी अ स्टील की लगी हुई है।

और वहां पे बहुत सारे पेर-पौधे भी देखने के मिल रहे हैं सामने में एक ट्रक है उसके ऊपर काली कलर की पन्नी है।

वहां पे एक उजले एक लड़का है उजली कलर शर्ट एवं काली कलर कि बैग पीठ पे लटकाया हुए हैं।

उसके पीछे एक फर्श है फर्श पे बहोत सारी कुर्सी है।